लकड़ियों की चौपट बना रही है कोई पीछे की साइड में तो कोई आगे की साइड में बैठे हुए हैं।

ये जमीन बड़े-बड़े दिख रही है। और छोटे छोटे --